और ये बहोत पुराना मंदिल लग रहा है इसका जो डिज़ाइन है लग रहा है तीन सौ चार साल पुराना है और यह मन्दिर देश-विदेश में जाना जाता है।

यहाँ एक मूर्ती है मूर्ती में घोड़ा है और घोड़ा के अंदर में मूर्ती बैठा हुआ है एक कोई महापुरुष अ --

यहां कुछ तालाव का तीर है यहां महिलाएं बताएं लोग पूजा अर्चना के लिए आए हैं लग रहा है यहां --

यहां हिंदू धर्म मानने वालों का इन दोनों पर बहुत आस्था रहता है।

यह ईश्वर है यह शक्ति देता है लाल कलर का माला पहना हुआ है बसुरी बजाता हुआ मूर्ति बनाया गया है चुन्नी लगाए गए हैं।